यहां हम देख सकते हैं कि ऊपर से झरना बहता हुआ--

झरने के दोनों साइड पहाड़ है।

और सामने एक सर पढ़ा रहे है।

यहां हम देख सकते हैं कि यह बच्चों के कपड़े की दुकान है यहां पर बच्चों के लोअर --

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक कपड़े की दुकान है एक डमी को बच्चों की ड्रेस पहनी गई हैं।

और हरे वाली रिक्शा के दोनों साइड दो आदमी खड़े हुए हैं।

एक आदमी अंदर दो थाली लेकर जाता हुआ दिखाई--